ट्रेन खड़ी हुई है ट्रेन में ई ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हुई है स्टेशन पे लोग अपना-अपना जहाँ का यात्रा करना चाहते हैं।

जिम है। जिम में लोग अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए आते है। जिम मे बहुत सारी ट्रेडमिल है।

ट्रेडमिल पे लोग चल कर अपनी सेहत को अच्छा रखते है।

बहुत ही बड़ा जंगल है जंगल मे बहुत सारे पेड़ लगे हुए है।

एक हाथ है उस हाथ मे एक फूल है बहुत सारे हरे-भरे और प्यारे-प्यारे पेड़ लगे हुए है यह एक बड़ा घोर जंगल है।

यहाँ पर फूल हर रंग की मिलती है और देखने में भी बहुत खूबसूरती से रखे हुए हैं।

जमा करने व पैसे निकालने आते है बैंक ए.टी.एम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है जो की अंदर जाने का रास्ता देख रहा है।